यह इमेज एक ये कंपनी की इमेज है जिस कंपनी का नाम है--

यहां पर हरियाली नजर आ रही है ब्लू कलर की चद्दर नजर आ रही है पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ बाइक्स नजर आ रही है।

साइकिल भी नजर आ रही है चार ए_सी भी नजर आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे है पेड़ की पत्तियां नजर आ रही है।

कुछ मूर्तियां भी नजर आ रही है एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

गे इमेज एक ऑफिस की इमेज है जहां पर मुझे--

ऑटो वाला नज़र आ रहा है रेड कलर की ऑटो नज़र आ रही है इसने एक साइकिल मार्ट के सामने खड़ा हुआ --

यह इमेज सुजुकी स्टोर की इमेज है जहां पर मुझे एक्सेस और वर्ग में नजर आ रही है।

ये ए_टी_एम से पैसे निकालने आए हैं ये ए_टी_एम का नाम है क्यूब ए_टी_एम --

कुछ टोके खोके भी नजर आ रहे है यह दुकान अमेजिंग लग रही है।

जहां पर मुझे दो कंबल तीन तकिए और एक चादरा भी नजर आ रहा है।

ये इमेज एस_सी_एस की इमेज है जहां पर मुझे हरियाली नजर आ रही है।